एक कागज है सामने एक खिड़की दिखाई दे रही है एक पानी की बोतल रखी है टेबल पर।

दिखाई दे रहा है एक साइड एक स्टैचू दिखाई दे रहा है सामने एक घड़ी लगी हुई है ऊपर एक पंखा लगा हुआ है।

दिखाई दे रहे हैं जो बहुत सुन्दर लग रहे हैं सामने कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं घास दिखाई दे रही है जोकि हरे रंग --

एक आदमी ने सफेद शर्ट सफेद पेन्ट पहना है सामने एक पोस्टर नजर आ रहा है।

यहाँ पर एक गाड़ी नजर आ रही है जो हवा में टंगी हुई है दो वर्करस नजर आ रहे है सामने--

ऊपर एक कैमरा नजर आ रहा है एक बल्ब भी नजर आ रहा है एक दरवाजा दिखाई दे रहा है एक खिड़की दिखाई दे रही है।

कुछ लोग भी बैठे हुए है एक कुर्सी भी रखी हुई है।

यहाँ पर एक घर नजर आ रहा है घर के नीचे एक दुकान है जिसका नाम टी डब्लू आई डब्बल एल एस --

यहाँ पर एक जिम नजर आ रहा है कुछ मशीने नजर आ रही है ।

यहाँ पर एक मैदान नजर आ रहा है जिसमे काफी सारे लोग बैठे हुए है।

यहाँ पर एक एस बना दिख रहा है जो नीले बोर्ड पर बना हुआ है यहाँ पर आधा सफ़ेद सेंट दिख रहा है ।

उसका पानी नीले रंग का है उसके अंदर नीली-नीली लाइनिंग नजर आ रही है।

नीला हरा गुलाबी ऑरेंज रंग का दिखाई दे रहा है सामने एक --

बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमे बाइक सर्विस सेण्टर लग --